यहाँ एक लेडिज बैठी हुई नजर आ रही है। उनके सामने बहोत सी मछलियाँ रखी हुई हैं।

यह मोबाइल में फोटो ले रहा है यहाँ पीछे बहुत सी जिम की मशीनें रखी हुई है।

यहां एक लड़का दिख रहा जो इस्त्री कर रहा है।

यहाँ कुछ बच्चे नीचे बैठे हुए दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक एटीएम दिखाई दे रहा है। यहाँ बाहर बहोत --

यह एक घर दिखाई दे रहा है। यह काफी बड़ा है। यहाँ तीन ब्लू दरवाजे लगे हुए हैं।

जो पानी के अंदर है। यहां कुछ खेती करा जा रहा है।

यह एक जिम की फोटो है यहाँ बोहोत- सी मशीनें रखी हुई हैं।

यहाँ दूर में एक घर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ गाय घूमते नजर आ रही है।

यहाँ केक बोहोत सुंदर-सुंदर है। यहाँ अंदर में पूरा सजाया हुआ है।

यहाँ एक आदमी नजर आ रहा है। इस आदमी ने ब्लू कलर की ड्रेस पहने हुए है।

यहाँ बहोत बड़ा तालाब जैसा दिख रहा है। इसके पीछे बहुत से घर नजर आ रहे --

यह एक बहुत बड़ा सा हॉल है। यहाँ बहुत से चेयर लगे हुए दिख रहे है।

यहाँ एक स्टेज बनाया हुआ है जोकि बहोत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है।

यह एक नदी की फोटो है। यह काफी बड़ी नदी है। यहाँ चारों तरफ हरियाली छाई हुई है।

यह लोग प्रेयर करने आते हैं।

यहाँ एकदम व्हाइट कलर का है। यहाँ सामने पुरा --

एक कार खड़ी हुई नज़र आ रही हैं।